आप देख सकते हैं इस तस्वीर में एक व्यक्ति है और कुछ लोग के ऊपर हाथ आपको दिख सकता है।

छोटा सा पीछे टीने का है नीला रंग का और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

आसमा अह बादल पीछे में है वो सफेद रंग का है।

गिरजा का जो सीढ़िया है वो लाल रंग की हैं।

आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये रसोड़े के समान का दुकान है।

पीछे मे कुछ लोग भी है और आगे में एक महिला और एक व्यक्ति दोनों खड़े हुए हैं फोटो के लिए पोज़ दे रहे।

पीछे में सुंदर सा घर और कुछ ट्वेंटी थ्री इयर्स लिखा हुआ है।

और गाड़ी जो है इसमें डे डेकोरेशन किया हुआ है।

टंकी है एक स्टूल है लाल रंग का एक बकेट और एक कारपेट बिछाया गया है।

पीछे एक बस है पीला रंग का और पीछे जंगल है और घास--

टीना है सफेद रंग का दीवार है और घास हरा भरा है।

फूल बहुत अच्छे से सजा के रखा है आपको चेयर भी दिख रहा है।

कुछ स्टूडेंट्स ब्लैक ड्रेस में और रेफरी भी आप देख सकते हैं और नीचे दो आदमी।

साइड में सामान पड़ा हुआ है और एक घड़ी आपको देख सकते हैं।